यह आयकर विभाग के जो है ऊपर का हिस्सा है नीचे का हिस्सा उतना अच्छी तरह से उभर के नहीं आया | इस तस्वीर को लेने का जो तरीका है वो काफी अतरंगा है ये तस्वीर बिलकुल ऐसा लग रहा है काफी नीचे से लिया गया होगा।

देखने में ऐसा लग रहा है की ये मंदिर काफी पुराने दिनों में क्रिएट की गयी होगी और इसकी कुछ एक महत्तव भी होगी क्युकि इसमें जो कलर यूस किया गया है हर एक कलर हर एक चीज को जो है इंडीकेट करती है जो कि काफी --

जो कि ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन में है| बाहर एक नल की जगह बनाई गई है लेकिन वहाँ पे कोई नल नहीं नज़र आ रहा है| वहाँ पे एक चौतरा बनाई गई है| ऐसा लग रहा है वहाँ पर नहाने के लिए वो जगह जो है बनाई गई है।

हो ही रही है उसकी वजह से इस बातों का जो है चल रही है और यहाँ पे खाली खाली नजर आ रहा है एक दो लोग बस बैठे हुए डिस्कस कर रहे हैं ।

का एंट्रेंस नजर आ रहा है घर पे जो है काफी खूबसूरती से काम वगैरह जो है वही है यहाँ पे जो है एक ग्रिल है उस पे दो लोग आराम से जा सकते है और यहाँ पे एक आदमी अंदर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है।

नृत्य करते हुए यहाँ पे एक दुर्गा माँ नजर आ रही है वो काफी जो है गुस्से में नजर आ रही है उनको जो है उनके दस हाथ नजर आ रहे दस हाथो पे जो कुछ खास चीज़ें हैं बो खरी हुई है रखी हुई है।